और कोई गाने व सिंगिंग कम्पटीशन और कुछ फंक्शन मे बहुत ही अच्छा होता है इसका साउंड सिस्टम साउंड का क्वालिटी --

देखिए जो रोड हम देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया रोड है बिल्कुल साफ-सुथरा है कोई दिकक्त ही नहीं है वो प्लट ऑटो खड़ा हुआ है ।

यहां पर तो एक गार्डन जैसा दिख रहा है मतलब यहां पर बहुत सारे कुछ छोटे मोटे कुछ पेड़-पौधे भी यहां पर है और दूर में एक बिल्डिंग बहुत ही बढ़िया एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

देख रहे है एक रिवर दिखाई दे रहा है और एक ब्रीज है ब्रिज के ऊपर से रिवर को बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसका जो पानी का कलर है वो थोड़ा नीला कलर है।

मतलब पानी के ऊपर है और बहुत ही बढ़ियाँ लग रहा है लाइटिंग बहुत ही अच्छा है ये शायद रात का नज़ारा है दिखाई दे रहा है बहुत ही सुन्दर लाइटिंग हुआ है

दिखाई दे रहा है ये कोई बिजली का शुभ अवस्था है बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अर्बन जैसा सिटी जैसा लग रहा है और बाहर का नजारा भी बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यहा पर बहुत सारा है मतलब बना गया है और ग्राउंड भी है और वह पर पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं चारो तरफ बहुत ही अच्छा सिनेरियो बना गया है बच्चों के खेलने के लिए तो ये बी बहुत अच्छा है ।

ये तो दिखाई दे रहा हैं पाटलीपुत्र का जो मेडिकल कॉलेज हैं एंड हॉस्पिटल है वो ही दिखाई दे रहा हैं। इस मे--

एक और हम देख रहे हैं एक रोड है एक रस्ता है और उसके आस-पास में बहुत सारे कुछ पेड़-पौधे लगाए गए हैं बहुत सारे ट्रीज हैं तो बहुत ही बढ़िया लग रहा हैं ये।

और दूर में कुछ हम देखरे बिल्डिंग भी है वह पर तो ये शायद पार्क के अंदर भी हो सकती है ये शायद ये सारी चीज।

तो नज़र बहुत ही बढ़िया है बहुत ही बढ़िया है उ नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छा है तो बच्चे लोग खेल कूद रहे है तो ये तो बहुत ही अच्छा है।

और बच्चों को खेलने कूदने के लिए बोहोत सारे बहुत से चीज़ है एक घोड़े का भी एक स्टेचू भी रखा गया है बच्चो आनंद देने के लिए तो बहुत ही बड़िया नज़ारा है। बहुत ही बड़िया--

यह पर हमें एक मार्किट दिख रहा है जहां पर बहुत सारे फ्रूट्स वगेरा है बहोत सारे फल है यहाँ पर हम देख रहैं है यहाँ पर अनारस हैं लिबु हैं।

बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर ऊपर में भी एक ब्रिज देखाई दे रहा है मंदिर के ऊपर बहुत बढ़िया है बहुत ही बढ़िया लग रहा है सीनरी भी --

एक के साथ बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क दिखाई दे रहा है पर ग्राउंड दिखाई दे रहा है हरा भरा है और बहुत सारे कुछ पेड़ पौधे भी रखा गया है और एक बच्चे दिखाई दे रहा है।